यहां पर एक फु सैलून है या फैमिली सैलून । यहां पर काले अअअ रंग से उउ लिखा हुआ है। और- यहां पर एक सोफा लगा हुआ है जो कत्थई रंग का है।

यहां पर अ कमरे का अ छत का रंग सफेद है और यहां पर लाइटे लगी हुई हैं। अअअ छोटी-छोटी बल्ब लगे हुए हैं जो सफेद रंग के हैं।

एक और-अ पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मनी फार लिखा हुआ है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो सफेद रंग का है ---

एक नदी है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और पानी का रंग काफी साफ़ है और यहाँ पर एक बोट है जो पीले रंग की है और अ एक आदमी उसे चला रहा है और उम्म पीछे वाला आदमी उसके कंधे पर हाथ रख कर खड़ा हुआ है।

बहुत दूर जाकर कुछ बिल्डिंगे दिख रही हैं। एक बिल्डिंग का अ छत का रंग लाल है और बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।